और आँखों में चश्मा भी लगाया हुआ है।

और सड़क पे कई वाहन चल रहे हैं जिसमे लोग जा रहे हैं।

जिसमें बुद्ध भगवान की खूबसूरत मूर्ति रखी हुई है।

काफी पेड़-पोधे दिख रहे हैं इस तस्वीर में।